दिखाएं और दीवार सफेद और पीले कलर की हो रही है बच्चे ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई दिख रही है मैम खड़ी है मैम --

किसी नदी का पुल का किनारे का फोटो दिखाई दे रहा हैं नदी के किनारे बीच सड़क बार जैसा में डिज़ाइन बनाई हैं उसके हाथ में दोनों साइड कुछ लोग नहाते हुए दिखाई दे रहा हैं पानी दिखाई दे रहा हैं सामने जो पुल जैसा बना हैं उसके ऊपर लोगों ने गाड़ियां खड़ी करी हुई दिखाई दे रही हैं।